और इसमें ट्रे भी रखी हुई है।

और इसमें बहोत सारी लाइटें भी लगी हुई है।

और इसमें लाइट भी लगी हुई है।

यह एक योगा रूम है।

इसमें भी शीशे भी लगे हुए हैं।